मैदान में कुछ लोग चलते-फिरते दिख रहे है।

कुछ मुर्गे दाना खा रहे है।

ये है एक जिम है यहाँ एक पोस्टर में एक लड़का बना हुआ है।

यहाँ काले रंग की एक टेबल पर एक शो पीस रखा हुआ है जिसमे आदिवासी देवी-देवता का--

पीछे की तरफ लाल रंग की कुर्सियाँ रखी है जिस पर एप्रेन पहनी हुई एक डॉक्टर और साथ में दो लोग दिख रहे है।

सफ़ेद रंग की साइड में एक काले रंग का ऑटो खड़ा है जिसमें अतुल लिखा हुआ है कुछ लोग भी दिख रहे है पीछे एक दुकान भी दिख रही है।

यहाँ एक फोर व्हीलर दिखाई दे रही है जिसमें आगे की तरफ का एक पहिया निकला हुआ है जिसके पार्ट्स दिखाई दे रहें हैं।

जिसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है सामने की तरफ एक नन सिस्टर खड़ी है।

और इसमें बहोत सारी मशीने रखी हुई दिख रही है साइड में जमे हुए बहुत सारे डंबल रखे है ।

ब्राउन कलर की ड्रेस पहना है इसके हाथ में गजरा है।

यहाँ एक छोटा-सा मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहोत सारे भगवानो की मूर्तियाँ और--

यहाँ एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी रही है सफ़ेद रंग की जिसके ऊपर नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें--

यहाँ एक मैदान दिख रहा है जिसके ऊपर हरी गाँस उगी हुई है इसके ऊपर बहोत सारी सफ़ेद रंग की बत्तख--